इस तस्वीर पर मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और सामने पर बहुत सारा रोड का पिलर भी दिखाई दे रहा है।

सामने पर एक छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है।

और बहुत सारे इंसान झुक के बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने पर कुछ इंसाने भी दिख रहा है।

सामने पर एक बड़ा सा वेयर हाउस भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पर मुझे एक होटल नजर आ रहा है।

बहुत सारा लाइट बल्बस भी जला हुआ--

सामने पर एक ब्लर सा शक्ल दिखाई दे रहा है।

छोटा सा अलमारी भी दिखाई दे रहा है।

इसके अंदर समोसा और कुछ खाने का चीज रखा हुआ है।

टेबल के ऊपर सफेद रंग का प्लेट है जिसमें फ्राइड राइस दिखाई दे रहा है।

और एक लंबा सा दीवार भी है।

और जमीन भी दिखाई दे रहा है।

और साथ में बहुत सारा खिड़की भी दिख रहा है और सामने पर एक गाय--

हाथी के सुन के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है।

और जला हुआ ट्यूबलाइट भी दिखाई दे रहा है।

और फेंसिंग से बना दीवार भी दिखाई दे रहा है।

स्कूल के बाहर बड़ा सा बैनर भी लगाया हुआ है।

बहुत सारा बॉक्स भी रखा हुआ है कमरे का रंग सफेद दिख रहा है।

सामने पर बड़ा सा झील भी नजर आ रहा है।